ओ नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है जिन पर रेलिंग लगी हुई है स्टील की।

फोटो के अंदर एक दुकान दिखाइ जिस पर केरला होटल का बोर्ड लगा हुआ है।

और इस दीवार में एक गेट लगा हुआ है जो शीशे का बना हुआ है और स्टील का हैंडल लगा हुआ है।

बीच में पिलर है जो जिस पर कुछ गुब्बारे लगे हुए हैं।

फोटो के अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड जिसमें हरी घास खड़ी है।

और सामने की तरफ दो टेबल लगी हुई है जिनपर काली और पीली पट्टी है।

नीचे की तरफ एक रोड है जिसपर सफेद कलर की पट्टी बिछी हुई है।

फोटो के अंदर एक बड़े से दुकान दिखाई गई है।

और ऊपर की तरफ एक पंखा लगा हुआ है और छत पर कुछ लाइटें लगी हुई हैं जो जल रही हैं।

पीछे को पेड़ पौधे खड़े है और बिजली के खंभे खड़े है।

और इस टेबल के ऊपर कुछ प्लेट और कप और कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं जो गोल्डन कलर की हैं।

और सामने की तरफ एक मिरर लगा हुआ है और ऊपर कुछ लाइटे जल रही है।

अंदर एक बड़े से एक शहर का चित्र दिखाया गया है।

सामने की तरफ एक जाल लगा हुआ है और कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

और साइड में टेबल पड़ी है और एक चेयर पड़ी हुई है।

और इसमें एक काउंटर है जिस पर शीशा लगा हुआ है और इसके अंदर रैक बनी हुई है।

साइड में डी_जे के स्पीकर रखे हुए हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और नीचे हरी घास दिखाई दे रही है।

इस फोटो के अंदर एक वाइन शॉप दिखाई गई है जिसमें रैक बनी हुई है लकड़ी की।

और सामने की तरफ एक बाउंड्री है जिसमें जाल लगा हुआ है और पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ--

और दो आदमी हैं जो लाल कलर के कपड़े पहनकर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

इन्होंने अपने हाथ में लोहे के सरिया ले रखे हैं।

इस फोटो के अंदर एक वाशिंग की दुकान दिखाई गई है। जिसमे दो ट्रैक्टर खड़े है।

और नीचे साइड में एक आदमी है जो पेंट कर रहा है जिसने हाथ में कूंची ले रखी है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है जिसमे नीचे हरि घास है।

पीछे की तरफ एक हवाई अड्डा दिखाया गया है जिसपे सफेद कलर है।

और एक टेबल रखी जिस पर जग और गिलास रखे हुए हैं और स् टेबल की साइडों में हरी हरी कुर्सी पड़ी हैं।

इस फोटो के अंदर एक घर का चित्र दिखाया गया है जिसमें सामने एक डिश लगी हुई है छत के ऊपर।

पीछे एक टावर खड़ा है और सामने एक काले कलर की केबल लगी हुई है।

और साइड में एक पाइप है जिस पर एक लाइट लगी हुई है।

इस फोटो के अंदर एक रूम दिखाया गया है जिसमें नीचे सोफे पड़े हैं।

कुछ आदमी इस छत के ऊपर दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो के पीछे एक मशीन लगी हुई जिसमें काले कलर केबल लटका हुआ है।

और पीछे की तरफ कुछ बिल्डिंग्स है जिनके नीचे दुकानें बनी हुई हैं।

इस फोटो के अन्दर एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है जिसकी छत पर एक ए_सी लगी हुईं हैं।

जिसमें कुछ थमले लगे हुए हैं जो लाल कलर के हैं।

इस फोटो के अंदर एक मैरिज हॉल दिखाया गया है।

और एक सामने कमरा है जिसके अंदर सीढ़ी लगी हुई है।

ऊपर एक ढा पंजाबी ढाबा का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर वैष्णो पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है।

सामने एक लाल कलर का बोर्ड है जिस पर चिल्ड्रन चॉइस लिखा हुआ है।

नीचे एक कार खड़ी है जो सफेद कलर की है और इसमें आगे एक छोटी सी झंडी लगी हुई है।

पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बिजली का खंबा दिखाइ दे रहा है।

और ऊपर की साइड में रैक में कुछ फाइल्स रखी हुई है।

और इन रैकों के अंदर बोतलें और डब्बे रखे हुए हैं।

और साइड में एक दरवाजा लकड़ी का है जिसके ऊपर एक आधार कार्ड का बोर्ड लगा हुआ है।